जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही--

बगल में एक नौजवान नाव पर--

ये एक ट्रक है जो कि बालू--

लौट करके आया है और--

सुंदर सुंदर शीशे और टाइल्स रखे गए हैं जो कि--

बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।